एक सुंदर सा तालाब है जो तालाब के चारो तरफ पेड़-पौधे है और तालाब के बीच में भी एक पौधे है जो की बहुत ही अच्छे लग रहे है और तालाब के साइड में फूल का भी गाछ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें एक होटल नजर आ रहा है और होटल के अंदर में ये मीटिंग करने का रूम है जो लोग मीटिंग करते हैं और यहाँ पे सोफा लगे हुए हैं।